बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं कुछ बच्चे हैं कुछ एक आंटी जी खड़ी हुई हैं दो लड़के खड़े हुए हैं बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहा पर एक यहा पर एक घर दिखाई दे रहा है जिसके बाहर जिसके बाहर बहोत सारे समान रखे हुए है।

यहाँ पर एक येलो कलर के मशीन दिखाई दे रही है और बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है जो की रेड कलर का कुछ है बहोत सारा समान दिखाई दे रहा है।

गमले की पेड़ लगी हुई हैं कुछ सीढ़िया दिखाई दे रही हैं और एक पेड़ लगा हुआ हैं।

यहाँ पर एक डेरी वाले भैया दिखाई दे रहे है एक डेरी दिखाई दे रही है जहाँ पर दूध दही पनीर और खो मावा बेचा जाता है।

यहाँ पर सिर्फ लकड़ी का काम ही दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक चर्च बना हुआ है जहा लोग प्रार्थना करने के लिए आते है और ये ब्राउन कलर का व्हाइट कलर का है।

--कुछ गिरिल है और कुछ लोग घर को तोड़ रहे है कुछ लोग घर को बना रहे है।

यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जोकि चकरी चला रहा है और कुछ और कुछ घर में लाइट्स लगी हुई है और उस घर के बाहर कुछ कुछ पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर एक यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही है जी उसकी आगे से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है वो पूरे तरीके से टूट गया है।